और इस दुकान के आगे तीन आदमी खड़े हैं एक ने साइकिल पकड़ रखा है और एक ने बाइक पकड़ रखा है।

और उसके बीच से गिरता हुआ पानी का झरना बहुत अच्छा दृश्यम लगता है।

और इस जगह पे कुछ लंबे लंबे घने घने आधे पेड़ भी से भरा हुआ है और इस जगह में नीचे भी कुछ छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

और यहां का मौसम बहोत अंधेरा है और ऊपर बहोत सुंदर नीला नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

ये एक जगह है इस जगह पे एक रूम है इस रूम में दो लड़के डांस करते हुए नजर आ रहे हैं दोनों ने हरे कलर टी शर्ट पहन रखी है।

जो सफेद कलर की ड्रेस में है और वह लाल टोपी भी लगाइए है और यह चारों साल साइड से गिरे हुए बच्चे दिख रहे हैं।

ये एक कपड़े की दुकान हैं यहाँ पे बहोत सारे रंग बिरंगी कपड़े टंगे हुए हैं।

यहां पे एक स्टेज बना हुआ है इस स्टेज के ऊपर एक महिला नृत्य करती नजर आ रही है।

और इस स्टेज पे कुछ बैलेंसिंग टंगे हुए हैं और इस महिला के बगल में एक चेयर भी हैं।

ये एक लंबी सी शॉप है इस शॉप के अंदर बहोत सारे छोटे छोटे टेबल लगे हुए है और कुछ सामान कार्टूनो से भरी रखी हुई है।

जेंट्स ने ब्लू कलर का कुर्ता पहन रखा है उस लेडिस के हाथो में एक पर्स है और एक लेडिस ने ब्लू कलर की सा --

इस दुकान में मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है और इसके ऊपर पोस्टर में हैवेल्स लिखा हुआ है।

और इस दुकान में ऊपर एक पंखा भी लगा हुआ है इस दुकान का गेट सीसे का है और--

ये एक आइसक्रीम शॉप है यहां पर एक फ्रॉक इस दुकान--

वही पे एक टावर भी है और यहां पे एक ट्रेन भी जाती दिख रही--

तराज़ू भी है और उसके बगल में कुछ ब्रेड के पैकेट रखे हुए हैं और एक पर कुछ सामान भी रखी हुई --

ये एक पेट्रोल पंप है इस पेट्रोल पंप के अंदर तीन टंकियां भी हैं और इस पेट्रोल पंप का कलर पीला है।

यहां पे एक टेबल है टेबल के ऊपर में पांच प्लेट्स है पांचों प्लेट्स में एक दो प्लेट्स प्याज --

पर सफेद-सफेद दो तीन पंखे भी लटक रहे है और यहां पे कुछ कपड़े भी रखे हुए नजर आ रहे है यहां की जमीन भी बिखरी-बिखरी सी लग --

ये एक बहुत सुन्दर सो जगह है यहां पे एक लंबी सी पुल जाती हुई नजर आ रही है इस पुल के नीचे एक लंबी सी नदी है।

ये एक छोटा सा रूम है इस रूम के अंदर बहुत से बहुत से कौए और बहुत से मुर्गे नजर आ रहे हैं।